वो उसके पास मे एक बन्दा खड़े होके उसको देख रहे हैं । यह --

एण्ड रॉड्स भी दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े।